आ बिल्डिंग पर आशू कार डेकोरेशन का बोर्ड लगा हुआ है |

एक गाय खड़ी हुई है। एक ट्रैक्टर आता हुआ दिख रहा है।

आ पीछे की तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

आ बच्चों की मछरदानी टंगी हुई है।

इमेज में वाइट और ब्लू कलर के पर्दों से डेकोरेशन करके बहोत सारे गेट बनाए हुए हैं |

बिल्डिंग पर सदर अस्पताल गोपाल गंज लिखा हुआ है।

एक जेन्ट्स फ़ोन पे बात कर रहे है।